और लास्ट वाली का तो हेयर स्टाइल बहोत अच्छा लग रहा है देखने में।

ये मोर का पिक्चर है ओर हमारा --

एक आ आदमी की है शायद जिसने लाल कलर की टी-शर्ट --